मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार इस बार जब मैंमन की बात के लिए जो भी चिट्ठियाँ आती हैं कमेंट्स आते हैं भाँतिभाँति के इनपुट मिलते हैं जब उनकी तरफ नज़र दौड़ा रहा था तो कई लोगों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद की
MyGov पर आर्यन श्री बेंगलुरु से अनूप राव नोएडा से देवेश ठाणे से सुजीत इन सभी ने कहा मोदी जी इस बार मन की बात का 75वाँ एपिसोड है इसके लिए आपको बधाई
मैं आपका बहुतबहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बारीक नज़र से मन की बात को फोलो किया है और आप जुड़े रहेहैं
ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है आनंद का विषय है
मेरी तरफ़ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफ़र संभव ही नहीं था
ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी
तब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था और संयोग देखिये कि आज होलिका दहन है
एक दीप से जले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा इस भावना पर चलतेचलते हमने ये रास्ता तय किया है
हम लोगों ने देश के कोनेकोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना
आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूरदराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है
भारत माँ की गोद में कैसेकैसे रत्न पल रहे हैं
ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का समाज को जानने का समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है
इन 75 एपिसोड्स के दौरान कितनेकितने विषयों से गुजरना हुआ
कभी नदी की बात तो कभी हिमालय की चोटियों की बात तो कभी रेगिस्तान की बात कभी प्राकृतिक आपदा की बात तो कभी मानवसेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा
अब आप देखिये क्या स्वच्छता की बात हो चाहे हमारे हेरिटेज को संभालने की चर्चा हो और इतना ही नहीं खिलौने बनाने की बात हो क्या कुछ नहीं था
शायद कितने विषयों को हमने स्पर्श किया है तो वो भी शायद अनगिनत हो जायेंगे
इस दौरान हमने समयसमय पर महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी उनके बारे में जाना जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है
हम लोगों ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात की उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश की है
कई बातें आपने मुझे बताई कई आईडीईएएस दिए
एक प्रकार से इस विचार यात्रा में आप साथसाथ चलते रहे जुड़ते रहे और कुछनकुछ नया जोड़ते भी रहे
मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुतबहुत आभार व्यक्त करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो देखिये कितना बड़ा सुखद संयोग है आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सवके आरंभ का महीना
अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा
अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं अलगअलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें जानकारियाँ लोग शेयर कर रहे हैं
NamoApp पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथसाथ झारखंड के नवीन ने मुझे एक सन्देश भेजा है
उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखे और तय किया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कमसेकम 10 स्थानों पर जाएंगे
उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का है
नवीन ने लिखा है कि झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ वो देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचायेंगे
भाई नवीन आपकी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ
साथियो किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो किसी स्थान का इतिहास हो देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं
आप देखिएगा देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धरा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी
देश को नई ऊँचाई पर ले जाएगी कुछनकुछ करने का जज्बा पैदा करेगी
आज़ादी के लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे
उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएँ अब हमेंसतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करे और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण
उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें
उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जीजान से जुट जाएँ और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछनकुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो
मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता करफ्यू शब्द सुना था
लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये जनता करफ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था
अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदहारण था आने वाली पीढ़ियाँ इस एक बात को लेकर के जरुर गर्व करेगी
उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना
आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे
देश के एकएक नागरिक की जान बचाने के लिए जीजान से जूझते रहे
पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी
साथियो हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम चला रहा है
वैक्सिनेशन प्रोग्राम की तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर की पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है
उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूँ
साथियो सही भी है देश के कोनेकोने से हम ऐसीख़बरें सुन रहे हैं ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं
यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग माँ राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी नेवैक्सीन की दोसे ली है
हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरुर लगवाएँ
मैं ट्विटरफेसबुक पर भी ये देख रहा हूँ कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं
केरल से एक युवा आनंदन नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सीन सेवा
ऐसे ही सन्देश दिल्ली से शिवानी हिमाचल से हिमांशु औरदूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं
मैं आप सभी श्रोताओं के इस विचारों की सराहना करता हूँ
इन सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरुर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी
और सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं हमें जीना भी है बोलना भी है बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे आज इंदौर की रहने वालीसौम्या जी का धन्यवाद करना है
उन्होंने एक विषय के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है
ये विषय है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया record
मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं
उनकी इस उपलब्धि पर बहुतबहुत बधाई
One डे इंटरनेशनल्स में सात हजार रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं
महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है
दो दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारोंलाखों को प्रेरित किया है
उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है
साथियो ये दिलचस्प है इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रेकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं
दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा
Gold मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी
ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया
इस बीच पीवीसिन्धु जी ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है
आजEducation से लेकर आंत्रप्रिन्योरशिप तक आर्मेड फोर्सेस से लेकर साइंस टेक्नोलॉजी तक हर जगह देश की बेटियाँ अपनी अलग पहचान बना रही हैं
मुझे विशेष ख़ुशी इस बात से है कि बेटियाँ खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही हैं
Professional चोइस के रूप में स्पोर्ट्स एक पसंद बनकर उभर रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ समय पहले हुई मैरीटाइम इंडिया सम्मित आपको याद है ना इस सम्मित में मैंने क्या कहा था क्या ये आपको याद है स्वाभाविक है इतने कार्यक्रम होते रहते हैं इतनी बातें होती रहती हैं हर बात कहाँ याद रहती हैं और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है स्वाभाविक है
लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ाया है
मैंने इस सम्मित में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी
गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के दो लाइट हाउसोंचेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है
उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट्स शेयर किये हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे
जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उनचुनिन्दा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है
यही नहीं भारत का ये इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अन्दर स्थित है
इसमें बिजली के लिए सोलार पनेल भी लगे हैं
गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की जो मेरिन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है
म्यूजियम में तेल से जलने वाली बड़ीबड़ी बत्तियाँ केरोसीन lightsपेट्रोलियम वापौर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लैम्प प्रदर्शित किये गए हैं
भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने विस्तार से लिखा है
उनका कहना है कि इस लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों वर्ष पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया उल्कनेश्वरा टेम्पल है
साथियो मन की बात के दौरान मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं
अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसों हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 सेवेंटी ओनलाइट हाउसों आइडेंटिफाई किये गए हैं
इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम एम्फीथिएटर ओपन एयर थिएटर कैफेटेरिया childrenएस पार्क ईसीओ फ्रेंडली कॉटेजों और लैंडस्केपिंग तैयार किये जाएंगे
वैसेलाइट हाउसों की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा
ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में जिन्झुवाड़ा नाम के एक स्थान में है
जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है खास इसलिए है क्योंकि जहाँ ये लाइट हाउस है वहाँ से अब समुंद्र तट सौ किलोमीटर से भी अधिक दूर है
आपको इस गाँव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो यह बताते हैं कि यहाँ कभी एक व्यस्त बंदरगाह रहा होगा
यानि इसका मतलब ये है कि पहले कोस्टलाइन जिन्झुवाड़ा तक थी
समंदर का घटना बढ़ना पीछे हो जाना इतनी दूर चले जाना ये भी उसका एक स्वरुप है
इसी महीने जापान में आई विकराल सुनामी को 10 वर्ष हो रहे हैं
इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी
ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी
सुनामी के दौरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे14 कर्मचारियों को खो दिया था अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे
कड़ी मेहनत करने वालेहमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ और लाइट कीपर्स के काम की भूरिभूरि प्रशंसा करता हूँ
प्रिय देशवासियोजीवन के हर क्षेत्र में नयापन आधुनिकता अनिवार्य होती है वरना वही कभीकभी हमारे लिए बोझ बन जाती है
भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है
बहुत देर हो चुकी है
हम बहुत समय गवां चुके हैं
Agriculture सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को नएनए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है
White रेवोल्यूशन के दौरान देश ने इसे अनुभव किया है
अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है
बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन का आधार बना रही है
बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं इनोवेशन कर रहे हैं
जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गाँव है गुरदुम
पहाड़ों की इतनी ऊँचाई भौगोलिक दिक्कतें लेकिन यहाँ के लोगों ने होनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की मधु की अच्छी मांग हो रही है
इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है
पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक आर्गेनिक होनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है
ऐसा ही एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे गुजरात का भी है
गुजरात के बनासकांठा में वर्ष 2016 में एक आयोजन हुआ था
उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा यहाँ इतनी संभावनाएं हैं क्यों न बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रेवोल्यूशन का नया अध्याय लिखें आपको जानकर खुशी होगी इतने कम समय में बनासकांठा शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है
आज बनासकांठा के किसान होनी से लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं
ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुना नगर का भी है
यमुना नगर में किसानबी फार्मिंग करके सालाना कई सौटन शहद पैदा कर रहे हैं अपनी आय बढ़ा रहे हैं
किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब सवालाख टन पहुँचा है इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है
साथियोहोनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती बल्कि बीवैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है
Pharma इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक industryहर जगह बीवैक्स की डिमांड है
हमारा देश फिलहाल बीवैक्स का आयात करता है लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं
यानि एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं
आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नैचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है
ऐसे में होनी की माँग और भी तेजी से बढ़ रही है
मैं चाहता हूँ देश के ज्यादासेज्यादा किसान अपनी खेती के साथसाथ बी फार्मिंग से भी जुड़ें
ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा
मेरे प्यारे देशवासियोअभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया
स्पैरो यानि गोरैया
कहीं इसे चकली बोलते हैं कहीं चिमनी बोलते हैं कहींघान चिरिका कहा जाता है
पहले हमारे घरों की दीवारों पर आसपास के पेड़ों पर गोरैया चहकती रहती थी
लेकिन अब लोग गोरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गोरैया देखा था
आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं
मेरे बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं
बत्रा जी ने अपने घर को ही गोरैया का आशियाना बना दिया है
इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गोरैया आसानी से रह सके
आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं
इससे घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है
मैं चाहूँगा प्रकृति पर्यावरण प्राणी पक्षी जिनके लिए भी बन सके कमज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए
जैसे एक साथी हैं बिजय कुमार काबी जी
बिजय जी ओड़िशा के केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं
केंद्रपाड़ा समुंद्र के किनारे है
इसलिए इस जिले के कई गांव ऐसे हैं जिन पर समुंद्र की ऊँची लहरों और साइक्लोन का खतरा रहता है
इससे कई बार बहुत नुकसान भी होता है
बिजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्राकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है
फिर क्या था बिजय जी ने बड़ाकोट गांव से अपना मिशन शुरू किया
उन्होंने 12 साल
साथियों 12 साल मेहनत करके गांव के बाहर समुन्द्र की तरफ 25 एकड़ का मैंग्रोव जंगल खड़ा कर दिया
आज ये जंगल इस गाँव की सुरक्षा कर रहा है
ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादीप जिले में एक इंजीनियर अमरेश सामंत जी ने किया है
अमरेश जी ने छोटे छोटे जंगल लगाए हैं जिनसे आज कई गांवों का बचाव हो रहा है
साथियोइस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड़ लें तो बड़े परिणाम आते हैं
जैसे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कन्डक्टर का काम करने वाले मरिमुथु योगनाथन जी हैं
योगनाथान जी अपनी बस के यात्रियों को टिकट देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुफ्त देते हैं
इस तरह योगनाथन जी न जाने कितने ही पेड़ लगवा चुके हैं
योगनाथन जी अपने वेतन का काफी हिस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं
अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरिमुथु योगनाथन जी के काम की प्रशंसा न करे
मैं हृदय से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूँ उनके इस प्रेरक कार्य के लिए
मेरे प्यारे देशवासियो वास्ते से वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने के बारे में हम सबने देखा भी है सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं
कुछ उसी प्रकार से वास्ते को वैल्यू में बदलने का भी काम किया जा रहा है
ऐसा ही एक उदाहरण केरल के कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज का है
मुझे याद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के कैंपस में एक बुक रीडिंग पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुआ था
इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रियूजेबल टॉयज़ बना रहे हैं वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से
ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों बाग और बॉक्सों का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं
कोई विद्यार्थी पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है
यहां इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि खिलौने सफे होने के साथसाथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हों
और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि ये खिलौने आंगनबाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं
आज जब भारत खिलौनों की मैन्यूफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वास्ते से वैल्यू के ये अभियान ये अभिनव प्रयोग बहुत मायना रखते हैं
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडला जी है
वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहे हैं
उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पचर्स स्कल्पचर्स बनाएहैं
उनके द्वारा बनाए गए ये विशाल स्कल्पचर्स सार्वजानिक पार्कों में लगाये गये हैं और लोग उन्हें बहुत उत्साह से देख रहे हैं
इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वास्ते की रिसाइक्लिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है
मैं एक बार फिर कोच्चि और विजयवाड़ा के इन प्रयासों की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे
मेरे प्यारे देशवासियो भारत के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय हैं
हम अपने योग आयुर्वेद दर्शन न जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास जिसके लिए हम गर्व करते हैं गर्व की बाते करते हैं साथ ही अपनी स्थानीय भाषा बोली पहचान पहनाव खानपान उसका भी गर्व करते हैं
हमें नया तो पाना है और वही तो जीवन होता है लेकिन साथसाथ पुरातन गँवाना भी नहीं है
हमें बहुत परिश्रम के साथ अपने आसपास मौजूद अथाह सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है नई पीढ़ी तक पहुँचाना है
यही काम आज असम के रहने वाले सिकारी टिस्सौ बहुत ही लगन के साथ कर रहे है
करबी एंगलांग जिले के सिकारी टिस्सौ जी पिछले 20 सालों से करबी भाषा का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं
किसी ज़माने में किसी युग में कार्बी आदिवासी भाई बहनों की भाषा कार्बीआज मुख्यधारा से गायब हो रही है
श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी ने तय किया था कि अपनी इस पहचान को वो बचाएंगे और आज उनके प्रयासों से कार्बी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यूमेंटेड हो गई है
उन्हें अपने इस प्रयासों के लिए कई जगह प्रशंसा भी मिली है और अवार्ड भी मिले हैं
मन की बात के द्वारा श्रीमान सिकारी टिस्सौ जी को मैं तो बधाई देता ही हूँ लेकिन देश के कई कोने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम लेकर के खपते रहते होंगे मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियोंकोई भी नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत ख़ास होती हैं
न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज नए प्रयास
और नए प्रयासों का अर्थ है नई ऊर्जा और नया जोश
यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में एवं विविधता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुआत को उत्सव के तौर पर मनाने की परंपरा रही है
और यह समय नई शुरुआत और नए उत्सवों के आगमन का है
होली भी तो बसंत को उत्सव के तौर पर ही मनाने की एक परंपरा है
जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं उसी समय बसन्त भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है
इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है
देश के अलगअलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा
चाहे उगादी हो या पुथंडू गुड़ी पड़वा हो या बिहू नवरेह हो या पोइला या फिर बोईशाख हो या बैसाखी पूरा देश उमंग उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा
इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है
इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा
चैत्र महीने के नौवें दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है
इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी मना जाता है
इस दौरान चारों ओर धूमधाम के साथ ही भक्तिभाव से भरा माहौल होता है जो लोगों को और करीब लाता है उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है आपसी संबंधों को मजबूत करता है
इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ
साथियोइस दौरान 4 अप्रैल को देश ईस्टर भी मनाएगा
Jesus क्रिस्ट के पुनर्जीवन के उत्सव के रूप में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है
प्रतीकात्मक रूप से कहें तो ईस्टर जीवन की नई शुरुआत से जुड़ा है
ईस्टर उम्मीदों के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है
ओन थिस होली एंड ऑस्पिशियस ओकेशन आई ग्रीट नोट ओनली थे क्रिस्टियन कम्यूनिटी इन इंडिया बट अलसो क्रिश्चियंस ग्लोबली
मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव और देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात की
हमने अन्य पर्वों और त्योहारों पर भी चर्चा की
इसी बीच एक और पर्व आने वाला है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है
वो है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती
इस बार अमृत महोत्सव में तो ये अवसर और भी ख़ास बन गया है
मुझे विश्वास है बाबा साहेब की इस जन्म जयंती को हम जरूर यादगार बनाएँगे अपने कर्तव्यों का संकल्प लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे
इसी विश्वास के साथ आप सभी को पर्व त्योहारों की एक बार फिर शुभकामनाएँ
आप सब खुश रहिए स्वस्थ रहिए और खूब उल्लास मनाइए
इसी कामना के साथ फिर से याद कराता हूँ दवाई भी कड़ाई भी
बहुत बहुत धन्यवाद